कार का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है।

एक ने लाल शर्ट पहनी हुई हैं।

और पिंक कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

जिसने ग्रे कलर की हुडी पहनी हुई है।

जिस पे बाय लिखा हुआ है उसके पीछे

इसके पीछे एक पोस्टर लगा है।

शर्ट पहनी हुई है यह बहुत बड़ा--

और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

काली चेरो पे बैठे दिखाई दे रहे हैं।

जिसके पर एक लिखा हुआ है।

पोस्टर लगा हुआ है स्कूल का नाम--

यहां एक लिफ्ट भी लगी हुई है।

यहां एक लड़के ने व्हाइट शर्ट पहन रखी हैं।

यहां बहोत सारी ईटी भी दिखाई दे रही हैं।

यही एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है यह बिल्डिंग का कलर --

यलो कलर का दुपट्टा ओड़े हुए है।

यह एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

उस दुकान का कलर हरा दिख रहा है।

यहाँ बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

और आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है।

लिखा हुआ दिख रहा है एक आदमी रेड कलर की टी शर्ट में--

यह एक शॉप की दुकान दिख रही है।